यहां पर एक काउंटर भी रखे हुए दिखाई दे रहे है यहां पर बहुत सारी लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर रस्ता भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

हमें एक शाप दिखाई दे रही है शाप में बहुत सारी मिठाई अभी दिखाई दे रही है यहां पर एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे लड्डू भी दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर एक एल_सी_डी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।